बोर्ड लगा हुआ है जिसमे लिखा हुआ है एंट्री एक्सिट ।

एक्सरसाइज करके अपने बॉडी को अच्छे से मेनटेन --

इस सीन में मोटर का रिसेप्शन दिख रहा है ।

डियर के आसपास बहुत सारी मिट्टियां मिट्टी है।

दीवार के उस पार हरी हरी घाँसें दिख रही हरी हरी घाँसें हैं ।

ये किसी गांव के फोटो है।

इस पिक में एक बिल्डिंग है बिल्डिंग के सामने एक रेड कलर की गाड़ी खड़ी है।

यह पे एक छोटा स ए_सी लगी हुई है वह--

यहां पे आंध्र बैंक का ए_टी_एम एक्सिस बैंक का ए_टी_एम भी है।